उसके छत में बहुत सुंदर सुंदर लाइटे भी लगी हुई हैं।

यह एक बहुत बड़ी बाइक पार्किंग है जिसके अंदर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है।

और इसके बाहर की ओर एक बहुत बड़ा कांच का गेट भी लगा हुआ है।

और पीछे की और कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यह एक बहोत बड़ा पैलेस है जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

और दीवार के साइड में कुछ खंबे भी खड़े हुए हैं और एक--

इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूलों से सजावट की रखी है।

यह एक बहुत बड़ी जिम है जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति जिम कर रहे हैं।